घेरावा कियाा गया हैं ग्राहक हर--

गेट एक साइड जो कि वो बहुत --

और कोर्ई कीटो सिस्टम है जो कि दौड़ने वाला है।

दोहारिया है जोकि और एक ईमेज दोहारिया है जोकि लोहा की खड़ हैं।

बैंक है जो कि शटर गिरा देते हैं और --

चेजा वाला ही घर है और --

और ये घर है जोकि ये खिड़कियाँ है और एक झुआरी --

और बोहोत साल से काफी पुराना खाना है और ऊपर से कर्कट डाला है और --

भी निकल चुका है।

और ढेर सारे बाइक स्कॉर्पियो टैंपू बस लगल हैं।